जैसे की ऊपर पहाड़ के ऊपर से निचे उतरते हुए देखिए पीछे मे भी छोटे-छोटे पहाड़ दिख रहे है देखिए उसमे काफी पेड़-पौधे है।

पहले जैसा लग रहा है यहाँ पर देखिये बाहर स्कॉर्पिओ कार और एक-दो लगी हुई है एक इ-रिस्खा पे महिला को जाते हुए देखिये।

ये ऊँची पहाड़ जैसी लग रही है यहाँ पे देखिये एक रस्सी से देखिये जिसपे कुछ नाप जैसा हो रहा है| यहाँ पे दो आदमी एक झुके हुए हैं एक खड़े हुए हैं।

यह सड़क दिखी जहा में हालत काफी हालत खरब लग रही है इधर देखए सभी स्टोर पे छोटी छोटी दुकान लगी हुयी है अलग अलग और सबके पास देखिये कस्टमर भी है सब लेने सामान--

और देखिए पीछे में बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और सामने जो--

ये हेप्पी बर्थडे का डेकोरेशन है डी_जे लाइट है जो काफी खुबसूरत लग रही है जो ब्लू और वाईट कलर के बलून हैं।

यह माला की दूकान दिख रही है यहाँ पे देखिये सारा फ्लावर डेकोरेट है| यहाँ पे बॉस है फ्लावर जो है एक झुंड में रखी गयी है।

आप पिक्चर में देखिये बहुत सारी महिलाएं - पुरुष हैं सब कुछ नहा रहे हैं कुछ पूजा करने के लिए खड़ी हैं अ झील या--

ये किसी दुकान की इमेज देखिये काफी क्लीन है और देखिये यहाँ पे पेड़ के नीचे एक छतरी लगा हुआ है| कुछ दुकाने दिखाई दे रही हैं छोटी सी | यहाँ पर देखिये बहुत सारे लोग बैठे दो लोग खड़े हैं।

पीछे बाइक लगा के और जो रास्ता है ऊंची जगह लग रही है थोड़ी-सी धरती से उधर नीचे--

बोर्ड लगी हुई है बाहर देखिये गेट भी लगा हुआ है देखिये ये रात के समय का है इमेज है जो की देखने में काफी अच्छी लग रहा है वाइट कलर की जो--